इसमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है झोपड़ी बनी हुई है जो दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक कमरे में रैके लगी हुई है जिस पर सामान रखा हुआ है।

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है जिस पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं कुछ ठेले लगे हुए हैं।

एक दीवार दिख रही है मंदिर के साइड मे एक गली दिख रही है जिसकी बाजु में एक घर दिख रहा है।

एक खंभा दिखाई दे रहा है बिजली का एक खंभा तार दिखाई दे रहे है बिजली के जो खींचे हुए हैं एक खंभे पर एक रेलिंग बनी हुई है पेड़-पेड़ के चारों और --

यहां पर रैक पर सामान रखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है पानी की बॉटल दिखाई दे रही है जो र-रखी हुई है नीचे तगाड़े में।

यहाँ पर बिल्डिंग्स ही दिखाई दे रही है जो की बनी हुई है यहाँ पर कुछ गमले से बने हुए हैं जिन में कुछ हम्म कुछ लगा कुछ मूर्तियां सी लगी हुई है।

यहां पर एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है और कुछ एक नर्स दिखाई दे रही है।

सड़क दिखाई दे रही है झंडा लगा हुआ है बैग दिखाई दे रहा है पेड़ लगे हुए हैं बैग दिखाई दे रहे हैं।